ये एक बहुत ही बड़ी सभा लगी हुई है जिसमें बहुत सारे आदमी--

लगा हुआ है और बहोत ही अच्छे से यहां पे डेकोरेशन की गई है।

ये एक बहोत ही बड़ा यहां पे स्वीट शॉप है और ये--

ये एक बहोत ही बड़ा पेट्रोल पंप है जिसमें बहोत सारा--

ये एक बहोत ही प्यारा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है काफी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और--

काफी अच्छा लगा हुआ है में है।

बनाया हुआ है पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

ये एक पुराना किला हैं जो पुराने समय में राजे महाराजाओं का किला होता था।

सभी कपड़े अच्छे से यहां पे करके रखे हुए हैं काउंटर बहुत ही बड़े बड़े हैं।

यहां पीसी जाती है और बहोत ही बड़ी मशीन यहां पे--